यहाँ पीछे एक पौधा है एक भैया बैठे है साइड में--

विशाल मेघा मार्ट जो भी कुछ लेना है होगा तो उससे ले जाइए--

का शोरूम है यहाँ बाहर में एक मंदिर है।

किया मोटर्स यहाँ किया की कार्स भी मिलती है किया के मोटर्स शॉप बहुत ही बढ़िया है।